यूज़र रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है
इस भाग में हम इन फॉर्म्स की मौजूदगी जाँचेंगे
इन फील्ड्स में हमने जो वेल्यूस टाइप की हैं उनसे अभी छुटकारा पाते हैं
और हम पासवर्ड की एन्क्रिप्टिंग करने जा रहे हैं
हम एचटीएमएल टैग्स को भी स्थानांतरित करने जा रहे हैं
मानते हैं कि मैं अपने लॉगिन भाग के लिए एन्क्रिप्ट कर रहा हूँ मैं यह लोगिन डॉट पह्प फाइल खोलता हूँ और हमें मेरे पेज में यहाँ कुछ सुधार करने होंगे
हम अपने डेटाबेस के लिए सीधा पासवर्ड ले रहे हैं
अतः हमें यह डब्यूजरनेम वैल्यू और हमारा डीबीपासवर्ड बदलने की आवश्यकता है
यदि आपने पहला विडियो नहीं देखा है तो आपको वह करने की आवश्यकता है ताकि आप इस कोड को लिखने में समर्थ हों
अपने रजिस्टर डॉट पह्प पर वापस चलते हैं और सबसे पहले हम सबमिट के लिए जाँचेंगे
अभी मेरे पास सबमिट वेरिएबल नहीं है
अतः यह डॉलर सिग्न अंडरस्कोर पोस्ट के बराबर होगा और अब सबमिट
ऐसा इसलिए क्योंकि जब उपयोगकर्ता यहाँ सबमिट बटन क्लिक करता है यह रजिस्टर की वैल्यू रखेगा
और यह कहेगा इफ थे यूजर हस क्लिक्ड थिस बटन तब हम अपने कोड के साथ जारी रहेंगे
अब अन्य वैल्यूस जो हमें चाहिए वह हैं उपयोगकर्ता का नाम
अतः उपयोगकर्ता का पूरा नाम
मैं केवल फुलनेम अंडरस्कोर पोस्ट और फुलनेम टाइप करूँगा आप इसका प्रमाण अभी यहाँ देख सकते हैं
अतः एक बार जब हमें फुलनेम यूजरनेम पासवर्ड रिपीट पासवर्ड मिल जाएगा तो हम केवल यहाँ दिए हुए नामों की नकल करेंगे ठीक है
अतः हमें फुलनेम मिल गया है और अब हमारे पास यूजरनेम है
मैं क्या करूँगा कि जब भी मैं कोड लिखूँगा मैं इन्हें नीचे कॉपी और पेस्ट करूँगा
अतः पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड
यहाँ पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड है
मैं इन वैल्यूस को बदलने जा रहा हूँ
इन्हें टाइप करने की आवश्यकता नहीं है
यदि आप पह्प में नये हैं तो मैं सलाह दूँगा कि केवल अभ्यास के लिए आप इन्हें बार बार टाइप करें
अतः आप इन्हें नहीं भूलेंगे
अतः हमें सारी वैल्यूस यहाँ मिल गयी हैं
अतः यदि सबमिट है
मैं इन्हें एको करूँगा केवल आपको दर्शाने के लिए कि यह सब ठीक से जमा हो चुके हैं
मैं आपको इसकी सलाह गलतियाँ जाँचने के लिए देता हूँI हो सकता है कि आपने कोई गलत वर्तनी लिख दी हो और यह सही नहीं है कि आप डेटा रखना चाह रहे हों जिसकी वर्तनी आपके डेटाबेस में गलत हो
यहाँ मैं लिखूँगा एको यूजरनेम और फॉरवर्ड स्लैश और पासवर्ड
फिर रिपीट पासवर्ड और फिर उपयोगकर्ता के फुलनेम के आगे लाइन टर्मिनेटर
अतः हमें यहाँ सभी डेटा मिल गये हैं जिन्हें हमने हमारे फॉर्म से निकाला था
अतः मैं इसे अभी फॉर्म दाता की तरह कमेन्ट कर दूँगा
अब तक आपको पता होना चाहिए कि यह कैसे करें
यदि फॉर्म जमा हो गया हो मैं इसे एको करने जा रहा हूँ यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह यहाँ पर है
यहाँ यदि मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ कुछ नहीं होता
मैं क्लिक कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा है
अतः यहाँ मैं केवल अपना पूरा नाम लिखूँगा और मैं अपना पासवर्ड टाइप कर सकता हूँ और एक पासवर्ड चुनता हूँ जो अभी के लिए एबीसी होगा
रजिस्टर पर क्लिक करें और कुछ भी नहीं हुआ
अतः इफ सबमिट पोस्ट सबमिट
ऐसा इसलिए
अपने फॉर्म एक्शन में हमें मेथोड निर्धारित करने की आवश्यकता है जोकि पोस्ट होने जा रहा है
मैं उसे सम्मिलित करना भूल गया
हमें पोस्ट का मेथोड चाहिए अन्यथा डिफॉल्ट रूप में यह गेट हो जाएगा
हाँ आप यह सब यहाँ ऊपर देख सकते हैं
अब मैं क्या करूँगा कि इस पेज को रिफ्रेश करूँगा और मेरा डेटा फिर से टाइप करूँगा
तो यह एलेक्स गैरेट है और यूजरनेम एलेक्स
यह एबीसी और एबीसी होगा
रजिस्टर पर क्लिक करें और मेरा डेटा यहाँ दिख रहा है
हम जाँच सकते हैं कि यह सही है या नहीं
मेरा पूरा नाम एलेक्स गैरेट था
मेरा यूजरनेम एलेक्स चुना गया था और स्वभावतः एबीसी यहाँ और यहाँ
अब मैं इस पासवर्ड्स को एन्क्रिप्ट करना चाहता हूँ
और यदि गूगल या कोई और सर्च इंजिन पर मद5 एन्क्रिप्शन के बारे में पढ़ें तो वह एम डी 5 है
आपके लिए मैं यहाँ अभी लिखता हूँ
यह डेटा को एन्क्रिप्ट करने का बहुत ही उपयोगी तरीका है
मैं इन सबसे अभी छुटकारा पाता हूँ
अब सब कुछ सही है
पह्प में मद5 फंक्शन स्ट्रिंग या संख्यात्मक वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू या केवल एक डेटा वैल्यू लेता है
और यह मद5 एन्क्रिप्शन में एन्क्रिप्ट हो गया है
मानिए मैं एलेक्स को मद5 में एन्क्रिप्ट करता हूँ
इसे एको और रिफ्रेश करें
डेटा को रिसेंड न करें
तो इसे यहाँ से सीधा वापस आना चाहिए और रजिस्टर पर फिर से क्लिक करें
यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि इफ सबमिट सही है
इस कंडिशन को हटा दें और रिफ्रेश करें
अतः यह मेरा नाम मद5 में एन्क्रिप्टेड है
यह हमेशा एक ही लम्बाई का होता है और मुझे लगता है कि इसे तोड़ना नामुमकिन है जबतक कि आप एक स्ट्रिंग को एन्क्रिप्ट न करें और फिर आप उसकी अपनी दो एन्क्रिप्टेड वैल्यूस से तुलना न करें
यदि आपको यह नहीं समझ आया तो मेरे पास मद5 एन्क्रिप्शन पर ट्यूटोरियल है
अतः परेशान न हों
बस आगे जाएँ और उसे देखें
अब मैं इफ सबमिट और फिर मेरा कोड लिखूँगा
मेरा फुलनेम यूजरनेम और पासवर्ड सही हैं
मैं इस मद5 एन्क्रिप्शन को अपने जमा किये हुए पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड के साथ जोड़ दूँगा
इसे न भूलें
फिर जब मैं एको करता हूँ लिखते हैं पासवर्ड और केवल एक ब्रेक और रिपीट पासवर्ड
जब मैं रिफ्रेश करने जाता हूँ या बल्कि जब मैं अपने फॉर्म को जमा करने जाता हूँ मैं अपना पासवर्ड एबीसी और मेरा रिपीट पासवर्ड एबीसी लिखूँगा
इसे रजिस्टर करें
आप देख सकते हैं कि मेरे 2 एन्क्रिप्टेड पासवर्ड एक जैसे हैं और दोनों डेटाबेस में रखने के लिए तैयार हैं
अब मानिए यदि कोई आपके डेटाबेस को हैक करता है और लोगों के पासवर्ड पता करता है जोकि एबीसी टाइप किया गया है वह इसे आसानी से पा सकते हैं
मैं इसे यहाँ टाइप करता हूँ
किन्तु अब वह क्या है इसे पता करने में वह असक्षम होंगे क्योंकि वह एन्क्रिप्टेड है
ठीक है हमने अपने पासवर्ड्स एन्क्रिप्ट कर लिए हैं
अब हम अपने डेटा में किसी भी टैग्स को हटाएँगे और यह करने के लिए हमारे पास स्ट्रिप टैग्स हैं
स्ट्रिप टैग्स
यह एचटीएमएल टैग्स को हटा देगा
जब मैं मेरे पासवर्ड का उपयोग करता हूँ मैं मद5 फंक्शन से पहले स्ट्रिप टैग्स का उपयोग नहीं करूँगा
मैं मेरे पासवर्ड के पहले से स्ट्रिप्ड रूप को एन्क्रिप्ट करने के लिए मद5 फंक्शन का उपयोग करूँगा
अतः यह ठीक होना चाहिए
मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ
ठीक है यह हो गया है और वापस चलते हैं और इसे देखते हैं
मैंने यहाँ एचटीएमएल में टाइप किया और मेरे यूजरनेम के लिए मैं बॉडी लिखता हूँ और मेरे पासवर्ड को बस वैसा ही एबीसी रखता हूँ
उस पर जाते हैं और यूजरनेम एको करते हैं और एक ब्रेक जोड़ते हैं
सब एको करने पर यह सब यहाँ टाइप हो जाएगा
मैं इसके बाद टेस्ट और इसके बाद टेस्ट टाइप करूँगा
अब यह स्ट्रिप टैग फंक्शन इस एचटीएमएल और इस बॉडी से छुटकारा दिलाएगा
आपके पास केवल टेस्ट होना चाहिए और हमें टेस्ट मिला है
हमें एक एरर मिली
वापस जाते हैं और जाँचते हैं
लाइन टर्मिनेटर इस्तेमाल नहीं किया
रिफ्रेश और डेटा रिसेंड करें
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें टेस्ट और टेस्ट मिला
अतः जो भी आप यहाँ टैग या एचटीएमएल टैग की तरह टाइप करते हैं वह बस खाली रहता है
अतः आप जानते हैं कुछ लोग अजीब हो सकते हैं और कहेंगे मेरा यूजरनेम एक इमेज होने जा रहा है
रजिस्टर
जो कार्य नहीं करता
यह यहाँ ऊपर एको नहीं हुआ है
किन्तु यदि हम एलेक्स लेते हैं और हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं
यह मान लिया गया है
अतः अभी इतना ही
अगले ट्यूटोरियल में हम जाँचेंगे कि प्रत्येक फील्ड टाइप है क्योंकि वह सब पंजीकरण के लिए अपेक्षित हैं
ठीक है मैं आपको अगले भाग में मिलता हूँ
आय आय टी बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ